और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है स्कूलों में यहाँ पे--

अच्छी-अच्छी चीजे होती है जिनको की लोग देखते है यहाँ पे बहुत पुरानी-पुरानी मूर्तियाँ होती है और बहुत सारी समाने होती है।

रोजगार करते है और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं।